इस कमरे में बहोत सारे फर्नीचर के वास्तु रखे गए हैं जैसे टेबल ड्रावर गोदरेज और भी बहुत सारे अन्य प्रकार के वस्तुएं रखे गए हैं।

बिल्डिंग के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

अलमीरा में खाने पीने की वस्तुएं और ऑयल भी रखा हुआ है।

पाइपें रंग बिरंग़ की है और पाइपें प्लास्टिक में पैक है और कुछ बंधे हुए हैं।

यह एक मॉल का दृश्य है इस मॉल में नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

इस रेस्टोरेंट में नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

टेबल पर कांच लगा हुआ है और भी वस्तु रखे गए हैं।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

इस हॉल में बहुत सारे फर्नीचर के वस्तु रखे गए हैं जैसे टेबल ड्रॉवर गोदरेज ।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है रेस्टोरेंट की दीवार पर टाइल्स लगा हुआ है।

इस रेस्टोरेंट में एक एल_सी_डी टी_वी भी है दीवार पर।

सारे टेबल पे फ्लावर पॉट सॉस की डिब्बी और टिशू पेपर भी रखे हुए हैं।

इस कमरे में बल्ब जल रहे हैं और सीलिंग में पंखे भी लटके हुए हैं।

रोड पर एक फल दुकान भी है यहां पर डालिया में कुछ फल रखे गए हैं।

यह एक कमरे का दृश्य है कमरे की दीवार का कलर ग्रीन है।

यहां एक टूल भी रखा हुआ है टूल पे दो पानी के जार भी रखे रखे हैं।

सभी आलमीरा में रंग बिरंग के तरह तरह के कपड़े सजा कर रखे गए हैं।

मकान के ऊपर एक ग्रिल का गेट भी है।

रोड के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

उसके ऊपर अग्निशामलय सह केंद्रीय पपरीक्षण स्थान धुर्वा लिखा हुआ है।